ये टूवेल्थ क्लास है कॉमर्स की यहां पर व्हाइट कलर्स की टेबल्स रखी हुई है व्हाइट ब्लू एक खिड़की है वहां से पेड़ दिख रहे है।

तीन कछुए पानी से बाहर निकल कर बैठे हुए है जंप कर रहे है।

एक शादी हॉल है यहाँ पे स्टेज बना हुआ है गोल्डन कलर का बैक ग्राउंड है ग्रे कलर की चेयर रखी हुई है यहाँ पे सोफा --

एक इंसान है जो चड्डा पेहना हुआ है और वाइट कलर के टी-शर्ट पेहना हुआ है ऊपर से कुछ ढक के जा रहा है सामने एक बिल्डिंग है।

एक ट्रे में जलेबी रखी बहुत सारी जलेबी रखी हुई हेंगी पीली कलर कि जलेबी है।